बेड पे हम अंदर समान भी रख सकते है वैसा उन्होंने वो दिखा रहे हैं।

चार सोफे रखें और बाकी चेयर है सोफे व्हाइट कलर की है।

एक ऑटो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर और ब्लैक कलर में --

दीवालों में एक बोर्ड लगी है जिसमें बहोत सारे पेपर चिपकाए गए हैं।

और जो है वो कटा हुआ है आधा जिसमें वापस से पत्ते निकल रहे है।

उस झाड़ से बहुत सारे रूटे निकले हुई दिख--

इस इमेज में एक घर है जो कि घर अभी बनने की तैयारी में है।

यह इमेज थोड़ा थोड़ा ब्लैक दिखाई दे रहा है क्यों कि सन जो है डूब रहा है।

यह फोटो एक दुकान का कपड़े का दुकान है जहां पे।

इस फोटो में एक दुकान जो की कपड़ों का है।

इस फोटो में एक बिल्डिंग नीचे तीन दुकान हैं।

ब्लू कलर का शर्ट ग्रे कलर की पैंट और लड़कियों ने ब्लू कलर का शर्ट अ ग्रे कलर का स्कर्ट पहना है।

मंदिर को बहोत सारे फूलों से सजाया गया है।

बीच में नंदी महाराज है मंदिर के बाजू में एक अह इंटा सा घर जिसके बाहर--

एक एस दो ए_सी के पंखे बाहर लगे तीन गाड़ियां खड़ी है सीढ़ी--

दो दो दुकान आजू बाजू की बंद है और बीच वाली दुकान--

एक की फोटो बनी हुई है और दो नंबर लिखे गए हैं।

जीसमें एक बच्चा चड्डी और बनियान पहने टॉप पर खड़ा--

कुछ चे अ बड़ी सी चेयर है रेड कलर में एक आंटी बैठी है ऑरेंज कलर का सूट पहने --

ऊपर ये लाइट लगी हुआ है ऊपर पी_ओ_पी हुआ है।

बर्थडे का लिखा हुआ ऐसे रखे गए हैं बैलून ।

अंकल है उनके खाली दो हाथ दिखाई दे रहे हैं उन्होंने--

इस जगह ही पानी दिखाई दे रहा है हरा भरा ग्रास है।